जिस पर स्टेशनरी पेंस लिखा है।

मिठाइयों को अलग अलग रैक में रखा गया है।

फर्श पर टाइल्स लगी हैं इस स्टोर मे बिस्किट कोल्ड ड्रिंकस कुरकुरे जैसे वस्तुएं हैं।

मंदिर में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

दृश्य में केले का भी पौधा है।